वेदांता बुक वर्ल्डस लिखा हुआ है और बहुत सारा किताब रखा हुआ है यहाँ पे ग्रुप-डी का भी किताब रखा हुआ है बिहार एस.एस.सी. का भी बिहार करेंट अफेयर्स का भी किताब लिखा हुआ है।

नीचे बहुत ही फर्श पे बहुत ही अच्छे टाइल्स मारी हुई है यहाँ पे।

और इसमें खिड़की भी है बहुत सारा और बहार में एक सेक्शन है पाइप--

सामने में उधर एक गाड़ी है ट्रक खड़ी है।

ये एक रेलवे स्टेशन है भागलवा जंक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है।